और यहाँ राजा -महाराजाओ की तरह दो यहाँ चौकीदार गेट लगा दिए गए है जो आमने-सामने खड़े है और यहाँ --

यहाँ एक मंगर है और कुछ इसको रहने के लिए पानी का भी उधर बगल में व्यस्था किया गया है और यह --

बाहर निकला है कुछ हवा-ववा खाने के लिए कुछ खाने-वाने पीने के लिए और यह बहुत ही --

और उसमें शंकर जादूगर शंक शंकर सम्राट लिखाया हुआ हैं ।

यहाँ हमलोग का भगवान जो वास करते है आउ यही जाकर उन लोग पूजा-उजा करते हैं ।

पर ये मुट्ठी मिट्टी के भी नहीं हवय लेकिन यह बहुत पुराना गणेश के मूर्ति हैं ।

यहाँ स्टेज है और यहाँ पे --

शादी का कुछ चल रहा है शादी -उदी होने के लिये और सगई है यहाँ पे आउ डी.जे. -उ.जे. लगा हुआ हैं ।

तो इसी को संरक्षण के लिए भारत छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यटन विभाग ने इसको सनेह रखा हुआ हैं ।

औ अपने चर्बी को घटाते हैं ।

यह एक दुकान है और यहाँ कुछ लकड़ी लकड़ी का बना हुआ कुछ-कुछ यहाँ पे --

बना हुआ सामान है यहाँ पे माला-वाला और बहोत कुछ कंघी-उंघी डमरू-उमरु --

और एक लड़का जो हाथी का मालिक है वो हाथी के ऊपर --

यह जिम है यहाँ लोग कसरत करने के लिए जाते है अपना शरीर शरीर को बनाये रखते हैं ।

हैल्दी रखते है यहाँ जिम में बहोत ही अच्छा रहता है इंसान को हमेशा जिम जाना चाहिए --

कन्या छात्रावास है और यहाँ --

छोटा- सा तलाव है और उधर पेड़-वेड़ है और एक तरफ पूरा कॉलोनी जैसे घर हैं ।